दूसरे साईड में एक छोटा सा पीपा रखा हुआ है।

दूसरे साइड में एक लड़की खड़ी है जो जिम कर रही है।

दूसरे साइड में बड़े बड़े दुकानें बनी हैं जिसमें बैनर लगे हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा बैनर लगा है जिस पर टुंडी कबाबी लिखा हुआ है।

दूसरे साइड में एक चार पहिया गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर बहोत सारे मालें की झालर टंगी हुई हैं।

यहां पर बहोत कलर की लाइट लगी हुई है।

दूसरे साइड में तीन लड़कियां खड़ी हैं आगे दो लड़कियां खड़ी हैं जिनके बार खुला है।

नीचे एक चम्मच रखा हुआ है। सामने एक बाल्टी रखी हुई है।

दूसरे साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है जो ब्लैक कलर की पैंट पहने हुए है।

सामने एक औरत खड़ी है जो वाइट कलर का पहने हुए है।

यहां पर बाइक खड़ी हुई है दूसरे साइड में एक बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है यहां पर एक गमला रखा है।

दूसरे साइड में बहोत सारी स्टैचू लगे हुए हैं।

दूसरे साइड में एक बैनर लगा हुआ है जिस पर एलो बैकरी लिखा हुआ है।

सामने एक बड़ी सी खिड़की है यहां पर ए_सी लगी हुई है।

यहां पर एक ए ऑफिस है इसमें दूसरे साइड में एक ए_सी लगी हुई है।

दूसरे साइड में लाइन से छोटे छोटे ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

इसमें बहोत सारी रेलिंग लगी हुई है जो सीमेंट से बनी है।

सामने बहोत सारा बदला दिख रहा है।

सामने एक बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए हैं।

दूसरी साइड खिड़की है जिस पर बहुत सारी सामान रखी है।

यहां पर एक बड़ा सा पेड़ लगा है जो रेड कलर के फूल लगे हैं और ग्रीन कलर के पत्ते हैं।

ये सामने एक बस है जो येलो और ब्लैक कलर की पेंट हुई है।

सामने एक बहोत बड़ी सी इमारत है।